इस तस्वीर को देखकर हम कह सकते हैं की यह एक आदमी की तस्वीर है जो की पत्थरों के बीच घुस कर के सेल्फी लेता हुआ दिखाई दे रहा है।